यहाँ पर एक रोड नजर आ रहा है जिसमे पानी नजर आ रहा है बड़े-बड़े पेड़ लगे नजर आ रहे हैं घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे जाकर पानी के आगे पेड़ भी हैं ।

यह एक रोड है रोड के आगे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमे नीचे एक दुकान नज़र आ रही है लोग अम्म बाइको बाइक चलाते हुए नज़र आ रहे हैं एक गाय जाते हुए दिखाई दे रही है।